इस फोटो में एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

उसका नाम आई लव रॉयल कैफे है।

बहुत सारे केले रखे हुए हैं।

बहोत सारी गाड़ियां दिख रही है।

तीस परसेंट छूट का बोर्ड लगा हुआ है।

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में बहुत सारी व्हाइट कलर की बैंचें रखी हुई हैं।

नीचे साइड वाइट कलर की टाइल्से लगी हुई हैं।

बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

एक लोग कार में पेट्रोल डाल रहा है वो ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए है।

इस फोटो में एक डिशनरी की शॉप दिख रही हैं।

जिसमें बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

उसका कलर ऑरेंज कलर का है।

बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं।

पीछे साइड छोटे छोटे घर है।

जिसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक कलर की टंकी रखी हुई है।

जिसमें छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक चट्टान दिख रही है।

इस फोटो में एक ब्रिज बना हुआ है।

उसके ऊपर प्रयाग लिखा हुआ है आस पास बहुत सारे पौधे हैं।

एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है अ जोमि ऑफ लखनऊ मेट्रो ।